ये एक सलून है | ये जेन्स सलून है और यहाँ पे बहोत सारा सामान रखा हुआ हैं | पीछे अलमारी भी बनी हुई है जो बंद है | व्हाइट कलर की है |

और इस यहाँ पे टेबल है जो ग्रीन कलर की है।

डायरी वगैरा यहाँ पर बोहोत सारा सामान मिलता है और यहाँ पे एक काउंटर रखा हुआ है जिसके ऊपर एक सिस्टम भी है। यहाँ पे ब्लू कलर की छोटी सी सीढ़ी भी रखी हुई है।